लॉन के बाहर खड़े होके फोटो खींचा रहा है।

सामने पेड़ लगे है घर है ऊपर सा बहोत सारे तार है दुकान है सामने।

छत बनी हुई है किसी चीज की --

आदमी काला कोट पहन के खड़ा हुआ है।

बहुत से बड़ा तसला है जिसमें टिक्की रखी हुई।

कुर्सियों पे बोतल रखी हुई हैं।

सड़क पे रेड पट्टी लगी हुई है।